नाव वाला अपनी नाव चला रहा है नाव वाले ने व्हाइट कलर की--

यहां पर कार्स खड़ी हुई है यहां व्हाइट और ऑरेंज कार से दिन का समय हो रहा है।

यहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है |

ये एक बहुत ही बुरी हालत में म पुरानी बिल्डिंग है |